लाल प्रेस से पहना हुआ है हर एक चीज है चीज है केया केया है नहीं है देखने में अच्छा लगता है सुंदर लगता है देखिए बड़िया बड़िया है हर एक चीज है कया कया ।

दूर -दूर तक बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है जो कि अच्छा हैं ।

देखिये यहां गं नदी है पानी है जल है अस्तर है बहोत चीजे इसमें देखने वाली बात है क्या- क्या है पता है क्या- क्या है पानी है।

घर हैं मकान हैं बहुत बढ़िया हैं हर एक चिज्ज् देखिये कितना- कितना सुंदर हैं क्या हैं बढ़िया लग रहा अच्छा लग रहा देखने मे बहुत सुपर हैं घर हैं मकान हैं लोग हैं।